और ये यहाँ पे सब कोई आराम करता है बैठता है और यहाँ पे पेड की छाव में--

दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को यहाँ पे काफी खंबे में लाइट दिया हुआ बहोत ही बड़ा--

और चारो तरफ रोशनी ही रोशनी छा--

यहाँ पर ये घूमने के लीए आते है जंगल के बिचो बीच से --

ये ग्राऊंड है और काफी बडा ग्राऊंड है देक सकते है यहाँ पे--

यहाँ पे देख सकते है यह बहन लोग दुर्गा सजे हुए ओर दुर्गा काफी दिन बाद को मेरे दुर्गा मा की--

लेवल पे बनाया हुआ है और चारो ओर --